इस भवन में जाने का सस्ता भी है भवन के बाहर --

और छोटे-छोटे पौधे भी लगे हुएं हैं और पेड़ कुछ हरे रंग कें हैं और कुछ काले रंग कें हैं।

उस आदमी के पास चश्मे पहने आदमी खड़ा हैं।

ये चित्र खुली सड़क का है जिस पर सड़क पर बहुत सारे पेड़ लगे हुए है।

और बहुत सारा पानी भी है एक टॉवर सा भी लगा हुआ है नीले रंग का --

और एक आदमी ट्रॉली बैग लिए जा रहा है उसकी तरफ --